तो कुछ बैंक टाइप की बैनर लगा हुआ है।

आटो के पीछे एक और आटो दिखाई दे रहा है।

इस्कूल में बोहोत सारे बालिकाएं दिखाई दे रही है ।

यहाँ पे एक पाइप पड़ा हुआ है जो कार --

बैंक में कुछ लोग आते जाते नजर आ रहें हैं।